बोर्ड रखा हुआ है जिसके ऊपर होटल एड रेस्टोरेट लिखा हुआ है एक ब्लू कलर का डस्टबिन रखा हुआ है चाय के कपस बने हुए है अदर जाने के लिए बड़ा सा गेट बना--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

आस पास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं छत के ऊपर वाइट कलर की टंकी रखी हुई हैं सामने एक मूर्ति बनी हुई हैं जिसको ब्लू कलर का कोट पहनाया गया है टाई लगी हुई हैं ये एक अदमी की मु --

ये एक पेट्रोल पम्प है रात का टाइम है यहाँ पर बहुत खूबसूरत लाइट्स जल रही है ब्लू गोल्डन कलर की एक बड़ा सा लैंप लगा हुआ है लोहे का उसके ऊपर वाइट कलर की लाइट जल रही है कुछ गाड़िया खड़ी है आस-पास।

अ फ्लैग लेहरा रहा है जिसका कलर ओरेंज है आस पास बॉर्डर बनाया गया है।